घर है जो बहुत ही शानदार दिखाई पड़ रहा है।

बहुत ही शानदार लोग टोपी पहन के बैठे है।

जो हरे कलर के हैं और यह बहोत ही साफ वातावरण रखते--

यहां पर इस दुकान पर टॉयलेट का सभी सा--

और यहां पर पंखे भी मिलते हैं जो बहुत ही शानदार दिख--

जो हमारे लिए सावधानी और सुरक्षा पूर्व होते हैं और यह लोग बहुत ही सुरक्षा--